फूल नजर आ रहे हैं।

एक ब्लैक कलर का चटाई दिख रहा है।

बाआआ काले बादल दिख रहे हैं बल्ब टांगे हुए दिख रहे हैं।

कुछ बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे कुर्सी नज़र आ रहे हैं एक बाइक दिख रहा है बहुत सारे पोस्टर नज़र आ रहे हैं।

जैसे बहुत कुछ फल दिख रहे हैं।

इस दृश्य मे चार गर्ल्स दिख रहे हैं टेबल पर ऊपर चित्र बनाए हुए दिख रहे--

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है इसमें बहुत सारे खिड़कियां नजर आ रहे हैं इनमें लगाये लोहे भी दिख रहे हैं।

पेड़ पौधे में दिख रहे हैं ।

पौधे दिख रहे हैं दो औरत दिख रहे हैं एक व्यक्ति दिख रहा है ब्लू कलर का पौधा पर्दे दिख रहे हैं रेड कलर का चटाई दिख रहा है।

ईंटें दिख रहे हैं साइकिल का शैडो दिख रहा है बोरे दिख रहे हैं।

पानी बहुत सारा दिख रहा हैं एक बड़ा सा टॉवर दिख रहा हैं।

यह एक पेट्रोल पंप का दृश्य है।

इस दृश्य में एक दुकान नजर आ रहे तीन व्यक्ति नजर आ रहे बहोत सारे सामान दिख रहे--

दो गमले दिख रहे हैं उनमें फसल दिख रहे हैं।

इस दृश्य में बहुत सारे डिब्बे दिख रहे हैं बोडे दिख रहे हैं।

एक संगीत गा रहे हैं बहुत सारे तार दिख रहे हैं।

कुरकुरे दिख रहे हैं प्लास्टिक दिख रहे हैं एक झाले दिख रहे हैं एक झंडा दिख रहा है।